आदमी के चेहरे पे ब्लर करके रखा है।

इस चेयर को बेट से बनाया हुआ है।

दीवार पर एक लाइट भी जला हुआ है।

ई पिक्चर में ऑरेंज कलर का वॉल दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे में भी बहुत सारा आदमी खड़ा होकर दिखाई दे रहा।

उसके पीछे में पंडाल सजा कर भी है।

ये आदमी के सामने में औरत साड़ी पहन कर है।

ये सब समान रैक में रखा हुआ है।

इस घर को पिंक कलर और व्हाइट से रेड पेंट किया गया है।

ट्रैक्टर के पास बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में बहुत सारा नेकलेस दिखाई दे रहा है।

नेकलेस को रेक में सजा के रखा हुआ है।

इस घर को ग्रीन और ब्लू कलर से पेन लगाकर है।

साइड में एक अलमारा भी दिखाई दे रहा है।

पीछे पर बहुत सारे कॉपी भी रखे हुए हैं।

यहाँ पे एक चर्च दिखाई दे रहा है।

बलूंस ब्लू व्हाइट लगाकर भी है।

इस पिक्चर में बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहा है।

आदमी के पीछे एक कुआ भी दिखाई मिल रहा है।

पंडित ने येलो कलर का कपरे पहने हुए हैं।

नदी का पास में जंगल भी दिखाई दे रहा है।

साइट में बहुत सारे पेर भी दिखाई दे रहा है।

रोड पे कारपेट रेड और ब्लैक से बिछाया हुआ है।

यहां पे बहोत सारे फूल रखे हुए हैं।

पास में बहुत सारे पटाखे जला कर भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में बहोत सारे मूर्ति दिखाई दे रहा है।

लोग का चेहरा में ब्लर करके रखा हुआ है।

साइड में एक फ्रिज भी रखा हुआ है।

मे ब्राउन कलर का एक दरवाजा भी डिखाई डे रहा है।